जो की भिन्न-भिन्न प्रकार की मछलियों को --

जो कि तीन मंजिली दिखाई दे रही है।

यह एक नहर का चित्र है।

जहाँ पर ऊनी वस्त्रो की निर्जल धुलाई की जाती है।

ऊपर का आसमान बिल्कुल साफ है।

यहाँ पर एक महिला साड़ी पहनी हुई --

ये है एक पुस्तकालय का चित्र है जहाँ पर --

दूसरी ओर दीवारों के ऊपर सफेद रंग किया गया है।

इस चित्र में हमे एक बहोत ही पुरानी इमारत दिखाई दे रही है।

यह एक दफ्तर की तस्वीर है।

यह एक गिरजाघर की तस्वीर है।

यहाँ पर पुरुषो के पेहेने के लिए कोट पेंट और --

जहाँ पर बच्चो के खेलने के लिए बॉल और बल्ला मिलते हैं।

यह एक पुस्तकालय का चित्र है।

इस चित्र में हमे एक नीले और जामुनी रंग का बोर्ड नजर आ रहा है।

और दुकानदार अंदर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में हमें एक नदी का किनारा दिखाई दे रहा है।

यह एक पुल का चित्र है।

यह एक ड्राई क्लीन की दुकान है।

यह जाल बिछाने के लिए लोहा काफी मात्रा में लगा है।

जहाँ पर बहोत सारे विद्यार्थी बैठ कर पढाई कर रहे हैं।